पिक्चर मे अ जो है शॉप दिखाई दे रही है अ शॉप जो है कपड़े कि है।

और महिलाओ के भी है मिडील बच्चो के भी है।

अ डार्क गोल्डन कलर का जैकेट है।

अ क्रीम और ग्रेए शैड में है और अधिका रेसीडेंसी उसका नाम है।

और औरते दर्शन कर रही है वाइट कलर का मंदिर है जिसमे दो लैंप लगे हुए है।

एक शॉप दिखाई दे रही है जो की हेरोंस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस नाम है शॉप का जहां पे जिम और स्पोर्ट्स के जो है।

और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट चेकस में इनपुरा इन कर के--

बच्चे ड्रॉइंग बना रहे है और बैनचेस है और कुछ बच्चो ने अ अ--

वाइट ड्रेस पेहन के रखी है कुछ ने रेड ड्रेस पहने के रखी हुई--

इमेज में शादी का गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें सोफे लगे हुए है टेबल लगी हुई है दो झूमर लगे हुए है।

इमेज में शॉपस दिखाई दे रही हैएक श्री -नाथ जी पॉव-भाजीपुलाव सेण्टर की शॉप है जहां पर टेबल और कुर्सीया लगी हुई है।

और हैंडल दिखाई दे रहा है बॉल दिखाई दे रही है जो की क्रीम कलर की है बेड पे वाइट बेलशीट डली हुई है।

इमेज में जो है एक खंम्बा दिखाई दे रहा है जिसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

इमेज में चर्च है चर्च दिखाई दे रहा है जिसमें एक लैडी अ जो है इस्पीकर पे माइक पे अनाउन्स कर रही है।

और तीन आदमी बैठे हुए है एक सिस्टर है और पीछे जीसस का क्रॉस में साइन लगा हुआ है।

इमेज में हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की उसका नाम सदर अस्पताल गोपाल गंज है एक कार खड़ी हुई है।

इमेज में स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रहे है और जिसमे एक गार्डन है और टैनिस कोर्ट बना हुआ है एक ब--

और रेड और ग्रीन कलर का वो है।

निशा मेहँदी है आ माजा का है स्प्राइड है किनले बॉटल दिखाई दे रही है।

कोकोकोला है हगिस डाइपर दिखाई दे रहा है।

और जो ग्रिल लगी ग्रिल का काम चल रहा है जहां पर कार भी खड़ी हुई है कुछ लोग भी है।

इमेज में बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे मनापुरम गोल्ड लोन का होडिंग लगा हुआ है।

की कौन-कौन से टाइप के हेयर कट है ओर--

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और नदी का पानी जो है थोड़ा सा मट्टी वाला है।

सर्फ़ है साबुन है पार्ले जी बिस्कुट है गुड डे हैं।

और एक बाहर कुछ एरिया है खेलने का बाहर का--